वहां पर कोई भी नहीं है और ऑपरेशन की--

मुझे इस पिक्चर में एक जे_जे ज्वैलर्स दिखाई दे रहा है।

मुझे इस पिक्चर में एक वेडिंग सोफा हाउस की शॉप दिखाई दे रही है।

ऊपर रेड कलर की वॉल में पेंट भी हुआ है।

वहां एक महिला भी खड़ी हुई है।

सोफे के पीछे हरी हरी घास भी दिख रही है उसके बगल में दो लकड़ी की सोफे की चेयर भी रखी हुई हैं।

प्रोपराइटर सुरेंद्र पांडे प्रोपराइटर नितिन पांडे--

यहां तीन लेडीस तालाब की तरफ जाते हुए दिख रही हैं।

मुझे इस पिक्चर में घर का बड़ा गेट दिख रहा है।

और चश्मा लगाया हुआ है शायद वो फोटो खींचवा रहा है।